इस तस्वीर में मुझे एक कुंड दिखाई दे रहा है यह कुंड जो है वो बहुत बड़ा कुंड दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे जंगल के बीचो-बीच एक पुराण खंडहर सा महलनुमा कुछ जगह दिखाई दे रही है।

ये वो वाशिंग एक्सप्रेस जहाँ पर अ कपड़ों को वाश किया जाता है ड्राई किया जाता है आयरन किया जाता है ये कपड़ा वाशिंग की एक शॉप है।

इस तस्वीर में मुझे एक बोर्ड दिख रहा है जो दिवार पर लगा हुआ है और इस बोर्ड पर लिखा है भारतीय स्टेट बैंक